कुछ लोग खड़े हुए हैं बीच मैदान में और देख रहे हैं पानी की तरफ और एक नाव खड़ी हुई है।

स्टेशनरी दिखाई दे रही हैं जिसमें कमोड बना हुआ है जिसमें अच्छे से बुक रख जाती हैं।

और कार खड़ी हुई हैं ग्रांड ओपनिंग इंडियन ऑइल के पेट्रोल पंप की हैं अच्छासा डेकोरेशन हुआ हैं।

ये किसी शादी का खाने पीने का कार्यक्रम बना हुआ है दो पानी की टंकी रखी हुई है स्टेज शॉप के लिए दूला दुल्हन के लिए बैठने की जगह बनी हुई है।

पार्किंग का एरिया जाता है जो दिखाई दे रहा है मुझे--

खाली मैदान हैं कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं कुछ लड़के दिखाई दे रहे हैं बिल्डिंगे बनी हुई हैं घर की --

बिल्डिंग बनी हुई है जिसमें कुछ पेड़-पौधे मुझे नज़र आ रहे हैं जो लोकेशन में दिख रहे हैं खाली मैदान है मैदान भी दिख रहा है जिसमें लड़के खड़े हुए हैं।

काली शीट रखी हुई है ब्राउन कलर का टेबल लगा हुआ है और शीट रखी हुई है चांदी सोना गोल्ड रखा हुआ है ज्वेलरी रखी हुई है ज्वेलरीस --

मति ईश्वरी पे भी वाला लिखा हुआ है ड्रम दिख रहा हुआ है।

और चेयर लगी हुई हैंजो मुझे नजर आ रही हैं काफी वेल फर्निश दिख रहा हैऔर काफी डेकोरेट लग रहा है और देखा जाए तो बहुत अच्छा--

देखा जाए तो बहुत सारे स्पीकर हैं एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ।